सोफा भी रखा हुवा है निचे पिंक कलर पेंट भी पुता हुवा है बहुत सारे आंख गजरे के फोटो भी लगे हुए है।

सामने एक लड़का खड़ा हुआ हैं लड़के का शर्ट का रंग नीले कलर का है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

फुग्गा भी लगा हुआ हुआ है फुग्गा का रंग पीला गुलाबी लाल कलर का हैं।